तार दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा जो कि भूरे रंग का है नीचे का फर्श दिखाई दे रहा वे नीले रंग का है पीछे कई सारी मशीने लगी है जो कि लाल रंग की है एक लड़का है जो कि बॉडी बि शो करता हुआ नजर आ रहा है पीछे कई सारे पोस्टर लगे हुए है।

हीया पर एक दुकान दिखाई दे दुकान में रैक लगी है रैक में कई सारी किताबे लग रही है। ऊपर की छत दिखाई दे रही है यहाँ पे रड लगी है पंखा लगा हुआ है बिजली के तार जा रहे है नीचे फर्श पे कई सारे लोग खड़े एक आदमी जिसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है।

काउंटर पर बहुत ज्यादा मात्रा में डिब्बे रखें है जिसमें रंग-बिरंगे पेन रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस पे कुछ लिखा हुआ है सामने की तरफ रिक्शा खड़ा हुआ है मोटर साइकिल दिखाई दे रही हैं कई सारे लोग दिखाई दे रहे है ऊपर टीन सेट दिखाई दे रहा है नीचे कूड़ा-करकट भी पड़ा हुआ है आस-पास दुकान दिखाई दे रही है और बिजली के तार --

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान का फर्श दिखाए दे रहा है जहाँ पे स्टूल रखा हुआ है काले रंग का है एक आदमी है जो कि सफ़ेद रंग की शर्ट पहने हुए है वह किताब खरीदता हुआ नजर आ रहा है रो --